नमस्कार स्विच स्टेटमेंट स्टेट्मेन्ट पर इस पीएचपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
मैं इस पर आपको एक नया अध्याय दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि यह पीएचपी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है
इफ स्टेटमेंट के लिए स्विच स्टेटमेंट एक सब्स्टिटूट है
यह अधिक स्पष्ट और प्रबन्धनीय चयन है
हालांकि इनपुट एक इक्स्प्रेशन है
तो अब किसी की वेल्यू इनपुट करते हैं और फिर इसके समान वेल्यू सेव करते हैं
उसके बाद हम कोड को निष्पादित कर सकते हैं यदि यह इस वेल्यू से मैच करता है या समान होता है
यह तुलनात्मक तकनीक नहीं है
तो इफ स्टेटमेंट की तुलना वेल्यूस को मैच करने तथा आउटपुट्स के लिए जो की इनपुट पर निर्भर है हम कहने जा रहे है स्विच चलिए शुरू करते हैं
स्विच इसके लिए बेसिक कोड है
चलिए यहाँ एक इक्स्प्रेशन रखते हैंउदाहरणस्वरूप मैं यहाँ ऐलेक्स कहूँगा
चलिए एक छोटा प्रोग्राम बनाते हैं और मैं इसे समझाऊँगा जैसे ही हम आगे जायेंगे
इफ स्टेटमेंट की ही तरह हम यहाँ कर्ली कोष्ठक रखेंगे
अब चलिए जाँच के प्रत्येक ढंग को देखते हैं
हम यहाँ वेल्यू की जाँच करना चाहते हैं
अब हम इसे क्वोटेशन मार्क्स में रखेंगे
आप स्पष्ट रूप से क्रमांकन नहीं कर सकते
तो जो हम टाइप करेंगे वह है केस केस की वेल्यू जिसे हम मैच करना चाहते हैं
उदाहरणस्वरूप Alex फिर हम कोलोन या सेमी कोलोन टाइप करेंगे
और फिर शर्त यदि केस आपके द्वारा चुने हुए स्विच एक्सप्रेशन के साथ मैच होता है
तो मैं टाइप करूँगा एचो यू हेव ब्लू आईज़ अपनी केस तुलना को समाप्त करने के लिए हम ब्रेक और सेमीकोलन का उपयोग करने जा रहे हैं
याद रखें कि हमने यहाँ सेमीकोलन का उपयोग किया है लेकिन यहाँ नहीं
अब दूसरा केस
चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करें
मैं बिली टाइप करूँगा और एचो यू हेव ब्राउन आईज़ ठीक है और फिर ब्रेक और सेमीकोलन
यह एक एकीकृतइन्टग्रेटिड इफ के समान है
यही कारण है कि मैं कह सकता हूँ यदि आपका नाम ऐलेक्स है तो एचो यू हेव ब्लू आईज़ या एल्से यदि आपका नाम बिली है तो एचो यू हेव ब्राउन आईज़ सम्भवतः कुछ लोगों को इस तरीके से यह करना आसान हो
यह अधिक पठनीय है किंतु यह पसंद का मामला है
ओके हमें और केसेस नहीं मिले मैं इस उदाहरण के लिए केवल ऐलेक्स और बिली का उपयोग करने जा रहा हूँ
यहाँ मैं कहूँगा डिफॉल्ट जो कि एचो करेगा आई डोंट नोव व्हाट कलर यूर आईज़ आरे ठीक हैहमें इसके बाद ब्रेक की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ अधिक केसेस नहीं हैं
स्पष्टतः वहाँ इसके बाद कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि वहाँ चुनने के लिए अधिक विकल्प नहीं हैं
अच्छा तो हमें यहाँ अपना स्विच मिल गया है
चलिए इसका उपयोग करते हैं
अब मैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए इस ऐलेक्स को यहाँ वेरिएबल्स के साथ बदलने जा रहा हूँ
अतः मैं टाइप करता हूँ नामे नेम इक्वल्स एलेक्स और मैं तुम्हें उसे तय करने के लिए दूँगा
फिर मैं यहाँ नामे कहूँगा
अतः आप यहाँ देखेंगे कि हम वेरिएबल को कैसे संयुक्त करते हैं
अभी से आपको जानना चाहिए कि उसे कैसे करते हैं
तो चलिए शुरू करते हैं और देखें कि यह कैसे कार्य करता है
आप स्विच कहेंगे आप इस इक्स्प्रेशन को लेंगे जो ऐलेक्स के समान है
मूलरूप से यह वह केस है जो ऐलेक्स के समान है और यह इसका अनुकरण करेगा
ब्रेक इसे समाप्त करता है
और यह केस है बिली और यह इसे एचो करेगा और ब्रेक के साथ समाप्त करेगा
यदि नाम राहुल है डिफाल्ट रूप से एचो होगा आई डोंट नोव व्हाट कलर यूर आईज़ आरे ओके तो चलिए इसको चलाने की कोशिश करते हैं
केवल संशोधित करने के लिए
हम देख सकते हैं कि एलेक्स एलेक्स से मैच करता है तथा आउटपुट से भी मैच करता है आप क्या कर सकते हैं क्या यहाँ आप कई लाइनों वाली कोड एंटर कर सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं
यह ब्रेक निर्धारित करता है कि केस कहाँ समाप्त होता है
एक इफ स्टेटमेंट को ब्लॉक को समाप्त करने के लिए कर्ली कोष्ठकों की आवश्यकता होती है
हालाँकि यहाँ ब्लॉक की समाप्ति को ब्रेक निर्धारित करता है
वैसे इन्हें ब्लॉक्स कहते हैं
तो इसे बिली में बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है
यू हेव ब्राउन आईज़ वास्तव में हमने यहाँ क्या निर्धारित किया
ओके अब मैं इसे काइल में बदलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ आई डोंट नोव व्हाट कलर यूर आईज़ are
क्योंकि वहाँ कोई ब्लॉक नहीं है जो हमारे प्रोग्राम फीचर में काइल की आँखों का रंग निर्धारित करे
अतः वह मूल रूप से स्विच स्टेटमेंट है
यह कोशिश करते हैं
कुछ इसका उपयोग करना पसंद नहीं करते कुछ इसके उपयोग को वरीयता देते हैं
यह सम्भवतः इफ स्टेटमेंट से अधिक तेज है
यह नियंत्रित करने के लिए आसान है
यह ज्यादा अच्छा दिखता है
तो यह सच में आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है